यह एक कॉलेज का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

इसमें काफी सारे पेंट के डब्बे रखे हुए जिनकी कलर अनेक है यहां पे नीचे के ओर बाल्टी मे भी पेंट रखे हुए हैं।

नीचे के और पक्की की गई यहां पे एक बड़ा सा टेबल नजर आ रहा है जो लकड़ी की मदद से बनी हुई जिस की कलर ग्रे है।

यह एक नदी का दृश्य बना हुआ है जहां पे काफी गहरे पानी नजर आ रहा है।

साइड में एक किट की मदद से दीवार भी नजर आ रही है।

यह एक रोड का दृश्य बना हुआ है जहां पे रथ पार करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे काफी सारे व्यक्ति हैं।

जंगल का दृश्य बना हुआ है जहां पे तीन चार व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहे हैं।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

बाहर की ओर काफी सारे व्यक्ति नजर जिनकी कपड़े कलर अनेक है लोहे की मदद से तार से जालिम की गई है बाहर के ओर दीवार में पोस्टर बनी हुई जिसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट लिखी हुई है।

घर के ऊपर पुआल रखे गए हैं नीचे की ओर मिट्टी वगैरे नजर आ रहे हैं।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

नीचे के ओर खाई भी नजर आ रही है यहां पे काफी सारे जानवर भी पाए जाते हैं यहां पे छोटे बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे काफी दूर में घर वगैरा भी नजर आ रहे हैं धुआं टाइप की भी कुछ नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति रिक्शे लेके आते हुए नजर आ रहा है जिसके कपड़े कलर ब्लू एवं ग्रे है।

रेड एवं ऑरेंज है यहां पे एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े की कलर व्हाइट है।

सामने की ओर एक दरवाजा भी नजर आ रहे हैं जिसकी कलर ब्लू है यहां पे दीवार में एक घड़ी भी टांगी हुई है।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

पीछे की ओर तीन चार चेयर बनी हुई जो लकड़ी के मदद से बनी हुई है।